बगल में एक आदमी बाइक लिए हुए खड़ा दिख रहा है बीच में स्ट्रीट लाइट लगी हुई अगर बगल कुछ घर में बने हुए नजर आना और कुछ कॉम्प्लेक्स भी बने हुए दिख रहे हैं बगल में कुछ लोहे के खंबे लगे हुए जिन पर तार लगे हैं।

किसी जगह पर काफी ज्यादा संख्या मैं लोग इखट्टा हुए दिखाई दे रहे है। यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे चबूतरे बने हुए जोकि सफ़ेद रंग के दिखाई दे रहे हैं।

हर फ्लोर पर बॉल्कनी दिखाई दे रही है जिसमे रेलिंग लगी हुई नजर आ रही है। बिल्डींग के बाहर एक रस्सी बंधी जिस पर कपडे सुख रहे है बिल्डींग के ऊपर कुछ नाम भी लिखा है।